digitizing map data in qgis पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे point और polygon shape फाइल्स डिजिटाइज करना और बनाना
point और polygon फीचर्स के लिए स्टाइल और रंग बदलना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको बुनियाजदी gis और qgis interface के साथ परिचित होना चाहिए
digitizing एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानचित्र चित्र या डेटा के अन्य स्रोतों से निर्देशांक को एक डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है
परिवर्तित डेटा को gis में प्वाइंट लाइन या पॉलीगन फीचर के रूप में संग्रहीत किया जा सकता है
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको code files लिंक में दिए गए bangalore शहर के विषयगत मानचित्र को डाउनलोड़ करने की आवश्यकता है
यह बैंगलोर शहर के विकास को दर्शाने वाला एक मानचित्र है
कोड़ फाइल डाउनलोड़ करने के लिए स्टेप्स
प्लेयर के नीचे स्थित लिंक code files पर क्लिक करें और इसे अपने फोल्डर में सेव करें
डाउनलोड़ की गई zip फाइल को एक्स्ट्रैक्ट करें
एक्स्ट्रैक्ट किए गए फोल्डर में bangalorejpg फाइल पर जाएं
मैंने पहले ही code file डाउनलोड़ एक्स्ट्रैक्ट की है और desktop फोल्डर में सेव की है
फोल्डर को खोलने के लिए इस पर डबलक्लिक करें
bangalorejpg फाइल पर राइटक्लिक करें
context मैन्यू से open with qgis desktop चुनें
qgis इंटरफेस खुलता है
qgis tips डायलॉग बॉक्स खुलता है ok बटन पर क्लिक करें
coordinate reference system selector डायलॉग बॉक्स खुलता है
हैडिंग coordinate reference systems of the world में wgs 84 चुनें
ध्यान दें कि wgs 84 अधिक व्यापक उपयोगित geographic coordinate system है
डायलॉग बॉक्स के निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
bangalore का thematic map कैनवास पर प्रदर्शित होता है
अब नए shape फाइल लेयर्स बनाते हैं
मैन्यू बार में layer मैन्यू पर क्लिक करें और create layer ऑप्शन चुनें
सबमैन्यू से new shapefile layer ऑप्शन चुनें
new shapefile layer विंडो खुलती है
यहां आप 3 प्रकार के फीचर्स point line और polygon ऑप्शन देख सकते हैं
डिफॉल्ट रूप से point ऑप्शन चयनित है इसे ऐसे ही रहने दें
crs wgs 84 है
विंडो के निचले दाएं कोने में ok बटन पर क्लिक करें
save layer as डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल को point1 नाम दें
फाइल को सेव करने के लिए उपयुक्त लोकेशन चुनें मैं desktop चुनूँगी
डायलॉग बॉक्स के निचलेदाएं कोने में save बटन पर क्लिक करें
यहां दिखाए गए अनुसार फाइल्स डेस्कटॉप पर सेव होंगी
qgis इंटरफेस पर वापस जाएं
ध्यान दें कि फाइल स्वतः ही layers panel में लोड़ होगी
इस मानचित्र पर हम उस लोकेशन को मार्क करेंगे जहां आईटी विभाग स्थापित हैं
जूमइन करने के लिए बीच का माउस बटन स्क्रोल करें
आईटी प्रतिष्ठानों के लिए मानचित्र के निचले दाएं कोने में legend को देखें
आईटी प्रतिष्ठान फ्लैग सिंबल के रूप में दर्शाए गए हैं
मानचित्र पर आईटी प्रतिष्ठानों को दर्शाने वाले प्वाइंट पर जाएं
यहां आईटी प्रतिष्ठानों को दर्शाने वाले दो प्वाइंट हैं
मानचित्र पर फीचर्स को एडिट या बदलने के लिए हमें toggle editing tool चुनने की आवश्यकता है
toggle editing टूल tool bar के ऊपरीबाएं कोने पर उपलब्ध है
toggle editing टूल चुनने के लिए इस पर क्लिक करें
टूलबार में add feature टूल पर क्लिक करें
अब कर्सर crosshair आइकन के रूप में प्रदर्शित होता है
मानचित्र में it प्रतिष्ठान सिंबल पर क्लिक करें
एक इनपुट बॉक्स point1 feature attributes खुलता है
id टेक्स्ट बॉक्स में 1 टाइप करें ok बटन पर क्लिक करें
उसी तरह दूसरे it प्रतिष्ठान पर क्लिक करें और फीचर को 2 के रूप में सेव करें ok बटन पर क्लिक करें
एडिटिंग को रोकने के लिए फिर से टूल बार में toggle editing पर क्लिक करें
stop editing डायलॉग बॉक्स खुलता है
save बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें मानचित्र पर दो रंग के प्वाइंट फीचर्स बन गए हैं
हम attribute table खोलकर बनाए गए दो फीचर्स को जाँच सकते हैं
layers पैनल में point1 लेयर पर राइटक्लिक करें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से open attribute table ऑप्शन चुनें
point1: features डायलॉग बॉक्स में id कॉलम में दो प्वाइंट बन गए हैं
attribute table डायलॉग बॉक्स बंद करें
स्पष्ट दिखने के लिए इन प्वाइंट फीचर्स की स्टाइल और रंग को बदला जा सकता है
point1 लेयर पर राइटक्लिक करें
context menu से properties ऑप्शन चुनें
layer properties डायलॉग बॉक्स खुलता है
color ड्रापडाउन पर क्लिक करें
रंगत्रिकोण को घूमा कर रंग चुनें
size टेक्स्ट बॉक्स के अंत में अपवर्ड ऐरो त्रिकोण पर क्लिक करके आकार बढ़ाएं
डायलॉग बॉक्स के निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
point फीचर्स के रंग और आकार में बदलाव को देखें
अब polygon फीचर्स वाली एक shape फाइल बनाएं
menu bar में layer मैन्यू पर क्लिक करें create layer ऑप्शन चुनें
सबमैन्यू से new shapefile layer चुनें
new shape file layer विंडो खुलती है
polygon में type चुनें
new field name टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें area
type text data रहने दें
add to fields list बटन पर क्लिक करें
fields list टेबल में आप देखेंगे कि area रो जुड़ गए है ok बटन पर क्लिक करें
save layer as डायलॉग बॉक्स खुलता है
file का नाम area1 टाइप करें
उपयुक्त लोकेशन चुनें
मैं desktop चुनूँगी save बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि area1 layer layers panel में जुड़ गई है
हम corporation area और greater bangalore area की सीमा मार्क करेंगे
corporation area और greater bangalore area पर जाने के लिए मानचित्र में legend पर जाएं
टूल बार में toggle editing टूल पर क्लिक करके toggle editing को ऑन करें
टूल बार से add feature टूल पर क्लिक करें
कर्सर को मानचित्र पर लाएं
क्षेत्र को मार्क करने के लिए corporation area की सीमा पर कहीं भी क्लिक करें
सीमा पर क्लिक करते रहें
कैनवास के शीर्ष पर चेतावनी संदेश प्रदर्शित हो सकता है यदि रेखाखंड प्रतिच्छेदित होते हैं कृपया इस संदेश को अनदेखा करें
यदि आप कोई गलती करते हैं और मार्किंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर esc key दबाएँ
आप फिर से प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं
जब तक आप पूरी सीमा का विस्तार नहीं करते तब तक सीमा पर क्लिक करते रहें
पूरी सीमा को मार्क करने के बाद पॉलीगन को बंद करने के लिए राइटक्लिक करें
area1 feature attributes इनपुट बॉक्स खुलता है
id टेक्स्ट बॉक्स में 1 टाइप करें
area टेक्स्ट बॉक्स में corporation area टाइप करें
ok button पर click करें
ध्यान दें मानचित्र पर नया polygon फीचर बन गया है
अब हम मानचित्र पर greater bangalore क्षेत्र को डिजिटाइज करेंगे
यहां दिखाए गए अनुसार greater bangalore को डिजिटाइज करने के लिए सीमा पर क्लिक करें
डिजिटाइज पूर्ण होने के बाद पॉलीगन को बंद करने के लिए राइटक्लिक करें
area1 feature attributes टेक्स्ट बॉक्स में id टेक्स्ट बॉक्स में 2 और area टेक्स्ट बॉक्स में greater bangalore टाइप करें
ok button पर click करें
एडिटिंग रोकने के लिए टूल बार में toggle editing टूल पर फिर से क्लिक करें
stop editing डायलॉग बॉक्स में save बटन पर क्लिक करें
attribute table को खोलने के लिए area1 लेयर पर राइटक्लिक करें
context menu से open attribute table चुनें
हम देख सकते हैं कि कॉलम्स id और area प्रकार के साथ 2 फीचर्स बन गए हैं attribute table बंद करें
हम देख सकते हैं कि दो पॉलीगन फीचर्स बन गए हैं
पॉलीगन फीचर का रंग और स्टाइल बदलने के लिए area1 लेयर पर राइटक्लिक करें properties ऑप्शन चुनें
layer properties डायलॉग बॉक्स में बाएं पैनल से style ऑप्शन चुनें
drop down menu के ऊपरी बाएं कोने पर categorized चुनें
कॉलम ड्रापडाउन में id चुनें classify बटन पर क्लिक करें
layer transparency स्लाइडर को 50 % करें
डायलॉग बॉक्स के निचले भाग में ok बटन पर क्लिक करें
अब मानचित्र में हम देख सकते हैं कि दो polygon features भिन्न रंग में हैं
लेबलिंग और फीचर्स के बारे में विवरण श्रृंखला में आने वाले ट्यूटोरियल्स में समझाया जाएगा
संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा point और polygon shape फाइल्स को डिजिटाइज करना और बनाना
point और polygon फीचर्स की स्टाइल और रंग बदलना
नियतकार्य के रूप में banglaore thematic map bangalorejpg पर industrial estates डिजिटाइज करें polyline फीचर बनाकर मानचित्र पर सड़क डिजिटाइज करें
आपका पूर्ण नियतकार्य यहां दर्शाए गए अनुसार दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर मौजूद विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वाले को प्रमाणपत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी इस फोरम पर पोस्ट करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद